येलो कलर का दिखाई दे रहा है।

दे रहे हैं और यहां पर सोफों का गलत --

दे रही है गार्डन के साथ में चक रोड भी गया हुआ है दिखाई दे रहा है।

यहां पर तरह-तरह के कपडे बच्चों के बड़ो के भी दिखाइ दे रहे हैं।

दे रही है यहां पर कुछ लोग--

ऑफिस दिखाई दे रहा है यहां पर बहोत सारी कुर्सियां भी लगी हुई दिखाई दे रही है यहां पर दीवार--

न्यूट्रिशन की शॉप दिखाई दे रही है यहां पर बहोत सारे डिब्बे भी रखे हुए दिखाई दे रहे है।

ब्लू कलर के और रेड कलर के डब्बे भी रखे--

मेरे सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बिल्डिंग बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है।

हां पर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और यहां पर एक गाड़ी--

यहां पर मुझे टैंट के पर्दे भी लगे हुए दिखाई--

बकरियां दिखाई दे रही है बकरियों के पीछे जंगल भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ बैटरी बाहर भी रखी हुई दिखाई दे रही है।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

कोई दिखाई दे रहे हैं यहां पर कुछ--

दे रहे है यहां पर बहुत सारे लाइटिंग भी कर रखी है।

एक बांग्ला दिखाई दे रहा है यहां पर--

दे रही है और यहां पर कुछ --